घर हैं बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

बाउंड्री किया हुआ है।

बाहर एक बड़ी सी गेट दिखाई दे रही है कांच की।

एक ठो ग्रिल की गेट दिखाई दे रही है और लाइटें नजर आ रही है।

अब टाइल्स बिछी हुई है जमीन में।

पौधे कुछ नजर आ रहे हैं।

बाईकें बाहर कुछ खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सारे औरतें योगा करते हुए दिखाई दे रहे है।

साइड में दुकाने लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ब्रेड नजर आ रहे हैं।

बिकियां दिखाई दे रहे और बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे चेयर्स टेबुल दिख रहे हैं और बहुत सारे जिम करने की मशीन दिख रहे हैं।

एक टायर दिख रहा है बोतल दिख रहा है।

चेयर्स टेबुल लगे हैं उसमें सफेद पर्दा किया हुआ है।

सोफे के दोनों तरफ डेकोरेशन किया हुआ है।

जिम करने की बहुत सारी मशीनें है।

लाइटें दिखाई दे रहे हैं कांच में।

एक बड़ा सा हवाई जहाज दिख रहा है।

एक लाल कलर का पोस्टर है।

बच्चे का बैग दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे चेयर्स टेबुल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसके एक लोहे की गेट है और कांच की गेट --

और एक बास की लकड़ी है उसमें लिखा है आवश्यक सूचना रीमिक्स फॉल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और बहोत सारे चेयर टेबुल कपड़े से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक छोटा सा रूम नजर आ रहा है।

बहुत सारे सामान टांगे हुए दिख रहे है जैसे कुछ चिप्स और चाकलेटे है।

एक औरत नजर आ रहा है एक ब्लू कलर डस्ट डस्टबिन नजर आ रहा है।

पोस्टर में एस_बी_आई लिखा हुआ है।